इस पिक्चर में आप देख सकते है यहां पे ये मॉल है हमारा यहां पे पुतला सब है यह एस्केलेटर ये है चढ़ने वाला सीढ़ी है।

ये हमारा टावर के पास आते मुजफ्परपुर में ये आते है वि बाजार और एक्सिस बैंक या बगल में बैंकर है और ये दूकान सब भी हैयहाँ पे बहोत सारे देख सकते है।

पिन सब कितना क्लीन है बड़े अच्च्छे से साफ़-सुथरा है और निचे भी फर्स भी साफ है।

चार्ज भी लगा हुआ है फोन पे और यहाँ पे अच्छे से आयरन कर रहा है आई थिंक ऑफिस जाने के लिए वह अपना शर्ट आयरन कर रहा --

उसके बाद आपको पूरा नीचे भी शॉपिंग करने के लिए आप घूम सकते हैं या ऊपर सीढ़ी से भी जा स--

की जिससे यह लोग आए और हमारा परचेज हो--

ये देखिए मैरिज हॉल है मैरिज हॉल है यहाँ पे केमरा है यहाँ पे बे ऐ है टेबल है वहाँ पे कितना सजा अच्छा सुंदर सजावट ऊपर झूमर लगा हुआ है ।